लैपटॉप है दो रैक लेखा बनाया हुआ है एक बीच में लैपटॉप है।

चार चक्का है टेम्पुल है एमें टेंपुल पांच टा आदमी चला रहा है होन्ने करीस फिर चार चक्का लगाय --

कुर्सी रखा हुआ है नाइन से जो कपड़ा पेहना है --

कुर्सी रखने वाला बैठने वाला है पोलने वाला है पंखा लगा है ऊपर में लाइट लगा हुआ है।

टेबुल है दोनो साइड कुर्सी है फोटो लगा हुआ हैं डॉक्टर भीम राज का है।

मूर्ति बना हुआ है एक गोदी में मूर्ति बनाया माला पेहनाया हुआ है अंदर से फूल --

ऊपर से छतरी डाला हुआ है घर लेखा बनाया हुआ है।

ये सब नाच रहा है आदमी खड़ा है खाट लेखा है कुछ बिछाया हुआ है।

हुआ है पूरी बूढ़ी अम्मा बैठा हुआ है घर है फोटो लगा हुआ है।

एक पोस्टर टंगा हुआ है। पोस्टर में आदमी जेंट्स के फोटो छपा हुआ है कंप्यूटर रखा हुआ है।

यह आदमी पाइप लिया हुआ है गड़ी में कुछ डाल रहा है चार चक्का में बगल में है।

घर है पंखा है वहां बोल बड़ रहा है लाल घर है दू गो पंखा है एगो पंखा है।